नीचे ब्राउन कलर दिखाई रहा है हल्का पिंक कलर दिखाई दे रहा है बोहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे कुछ कांच मे रोल दिखाई दे रहे है यहां पर बहुत सारे पोस्टर्स दिखाई दे रहे है कुछ पोस्टर्स पे कोशिका बनी दिखाई दे रही हैं और कुछ पे लिखा हुआ --

बोहोत सारे पेड़ दिखाय दे रहे हैं। एक पेड़ में पिंक कलर के फ्लावर्स दिखाय दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ यल्लो कलर की कुछ पत्तियाँ भी दिखाय दे रही हैं और यहाँ पर बिल्डिंगस दिखायी दे रही हैं।